यहां पे बहुत सारा व्यक्ति है।

यहां पे हिंदी और इंग्लिश से भी लिखा हुआ है ओम शिव साईं हॉस्पिटल डॉक्टर प्रियंका ।

यहां पे बहुत सारा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है और यहां पर बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।

यहां पे बड़े बड़ा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है और उसके ऊपर बहुत सारा सामान दिखाई पड़ --

यहां पे बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई पड़ रहा है लाइट दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पे लोहे का एक डब्बा बना हुआ है।

व्हाइट कलर का है और इसके आगे का इंजन खुला हुआ है।

जोकि इसका सारा पार्ट्स दिखाई पड़ रहा है।

जो कि अगल बगल पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा दवाइयां दिखाई पड़ रहा है।

यहां छोटा-बड़ा कार्टून दिखाई पड़ रहा है और यहां पे पानी का बोतल दिखाई पड़ रहा है ।

यहां पे कई सारा नकली इमेज बना हुआ--

यहां पे बहुत सारा सामान दिखाई पड़ रहा है और छोटे बड़े कार्टून दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे इमेज बना हुआ है ।

पे बहुत सारा कुर्सी दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे बहुत सारा सामान है और ये दुकान है।

और यहां पे बहुत सारा कुर्सी दिखाई पड़ रहा है।

और पंखा दिखाई पड़ रहा है जो कि वो व्हाइट कलर है।